यहाँ लहसन आता है। व्योपारी लोग अ लाते हैं। किसान लोग लाते हैं अपना --

यहाँ मंडी में बोली जाती है। यहाँ अच्छी खरीदारी होती है।

कोई और भी है। नव नाव वगेरा होती हैं उसमे तैरते हैं और खाने पीने की चीज होती है खाते पीते हैं।

लोग जाते हैं देखने के लिये झरने को और वहां पर नहाते हैं। बोहोत सुन्दर लगता है यहाँ पर बोहोत अच्छा फील होता है यहाँ आने से।